इस फोटो में कोन भी रखे हुए है।

इस फोटो में मेले में झूले लगे हैं।

इस फोटो मे काफी धूप भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में अलग अलग सेल्फ में दवाइयां रखी हुई--

ब्लू कलर का जैकेट व्हाइट कलर की शर्ट --

एक नाव जैसा कुछ दिखाई दे रहा--

इस फोटो में कुछ लड़कों ने गिटार पकड़ा है।